यह चित्र किसी पर्वत या पठार का लग रहा है इसके पास एक चट्टान दिखाई दे रही है।

दे रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य बहुत ही--

रूम का लग रहा हैं। यहां पर एक व्यक्ति--

शैड लगा हुआ है मकान के चारों तरफ--

दी गई है मकान के पास एक नारियल या किसी अन्य का वृक्ष लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में बहुत सारी गाय दिखाई--

में अंदर जाने के लिए एक गेट बना हुआ है दुकान के सामने।

खड़ी हुई है दुकान के ऊपर अच्छी प्रकार से लाइटें लगी हुई--

दे रहा है और अंदर लाल या कत्था रंग है।

खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा आसपास--

यह चित्र किसी दुकान का है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुए--